मुझे चित्र में चप्पल दिखाई दे रही है मुझे चित्र में सरिये दिखाई दे रहे है।

मुझे चित्र में झरना दिखाई दे रहा है मुझे चित्र में ब बटरफ्लाई दिखाई दे रही है।

मुझे चित्र में कुछ कॅने दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्लू है।

मुझे इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में विंडोज दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस चित्र में टी_वी दिखाई दे रही है मुझे इस चित्र में टेबल दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस चित्र में साइकिल का हैंडल दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस चित्र में आसमान दिखाई दे रहा है मुझे इस चित्र में पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस चित्र में आसमान दिखाई दे रहा है।